एक पानी बोतल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत ज्यादा लाइट भी लगा हुआ है बहुत ज्यादा फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

ये फोटो में हम लोग को एक घर दिखाई दे रहा है ये कोई ऑफिस जैसा लग रहा है ये एक कॉरिडोर है।

यह फोटो में हम लोग को एक चर्च दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ फंक्शन हो रहा है।

बहुत ज्यादा फैन दिखाई दे रहा है हम लोग को।

ये दो फ्लोर का बिल्डिंग है।

ये फोटो में हमको एक घर दिखाई दे रहा।

बहोत ज्यादा दुकान और घर दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो में हम लोग को एक घर दिखाई दे रहा है यह घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत ज्यादा इंटा रखा हुआ है।

सामने दो ठो इंसान दिखाई दे रहे हैं एक मटका रखा हुआ है पीछे कुछ गाच्चे दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में हम लोग को एस बी आई बैंक दिखाई दे रहा है उपर हम लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड में एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

ये फोटो में एक ठो वर्कशॉप दिख रहा है ऊपर में एक ठो बोर्ड लगा हुआ है उसमें जे पी मैकेनिकल वर्कशॉप लिखा हुआ है।

पीछे गच्छी दिखाई दे रहा है पीछे हम लोगों को बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये कोई स्कूल जैसा दिख रहा पूरा फेंसिंग लगा हुआ है व्हाइट कलर का हम लोग को एक काला गेट दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक तो घर दिखाई दे रहा घर का टाइल्स बहुत अलग अलग कलर का है नीचे वाइट कलर का टाइल्स दिखाई दे रहा --

पीछे दो स्कूल का बस दिखाई दे रहा रेड और ग्रीन कलर का कारपेट है।

एक वाइट कलर का गाड़ी है।

वॉल में पिज्जा लिखा हुआ है बहुत ज्यादा छोटा छोटा फोटो लगा हुआ है वाल में।

ये बस में बंदिरपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है।